यहां में बहोत बड़ा बड़ा लोहा खड़ा करके है।

यह आदमी दोनो सफेद कपड़ा पेहेन के है।

टेबुल को उपर में लैपटॉप भी रखा हुआ है।

ये फोटो में बिल्डिंग दिखाई दे रहा है।

बच्चा लोग ब्ल्यू कलर का कपड़ा पहन के है।

स्कूल का साइड साइड में पेड़ भी निकलके है बहुत ज्यादा।

स्कूल के ऊपर में टीना लगाके है।

बिल्डिंग को व्हाइट कलर से पेंट करके हैं।

ये फोटो में घर दिखाई दे रहा है लाइन से।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

ये साइड में जंगल भी निकल के है।

ये औरत ने एक साड़ी पेनके है आदमी पैंट सूट पेनके हैं।

ब्लैक कलर का मास्क पहन के है एक बच्चा।

ए_टी_एम का अंदर में एक आदमी खड़ा है।

बीच में टेबुल भी रखा हुआ हैं रेड कलर का।

पीछे में रेड कलर का बाल्टी भी रखे हैं।

ऊपर में चार ठो लाइट भी टांगा के है।

पीछे में थाली बर्तन रखने के लिए लोहा का रैक रखे हैं।

चेयर का सामने मे स्कूटी खड़ा होके है।

ये जगह को देख के पार्क जैसे लग रहा है।

आसमान भी दिखाई दे रहा है ब्लू से--

साइड में बड़ा सा नदी भी दिखाई दे रहा है।

कपड़ा सुखाने के लिए बम्बू टंगा के रखा हुआ है।

दूर में एक टीना घर दिखाई दे रहा है घर को ऊपर में छोटा छोटा फ्लैग लगाके है।

नहर का बीच में रोड भी दिखाई दे रहा है ।

दूर में पेड़ पौधा निकल के दिखाई दे रहा हैं।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

ये फोटो में बड़ा बड़ा पिलर दिखाई दे रहा है लोहा का ।

टेबल के ऊपर में पेपर रखा हुआ है।

ये दीवार को येलो और ऑरेंज कलर से पेंट करके है।